और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं गमले पड़े हैं नीचे रेत के ऊपर गमले लगे हुए हैं।

नीचे भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं ऊपर भी कमरे हैं खिड़कीयां दरवाजे लगे हुए हैं लोहे की जंगले लगे हुए हैं।

और यहां कुछ सामने फर्नीचर पड़ा--

इन तस्वीर के अंदर ये सामने एक बहोत बड़ा--

इसके आगे कुछ मोटरसाइकिले खड़ी की हुई है।

और नीचे कुछ डिब्बे पड़े हैं डिब्बों में चॉकलेट बिस्किट है ऊपर कुछ पारले जी बिस्कुट नमकीन कुरकुरे वगैरह है।

और नीचे जमीन के ऊपर बहोत सारे घर बन्ने हुए है।

आगे बहोत सारे घर बने हुए है घरों के आगे दुकाने लगी हुई है।

एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहां इंडसिंड बैंक बना हुआ है बैंक बंद है बाहर चार्ट बने हुए चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है।

आगे बहोत बड़े बड़े पेड़ है लाइट वाले खंभे लगे हुए हैं डेकोरेशन लगा हुआ है इधर एक गाड़ी है गाड़ी के पास में आदमी --

यहां पर किताबों की दुकान है अलग अलग लाइब्रेरी रूम के अंदर जैसे रखी जाती है वहां यहां बुक स्टोर है तरह तरह की किताबें हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा रूम है रूम के अंदर एक पलंग है पलंग के ऊपर बेडशीट बिछाई हुई है सफेद कलर की।

इस तस्वीर के अंदर यहां पर एक बहोत बड़ा रूम है रूम के अंदर ऊपर व्हाइट कलर किया हुआ है और दीवारों के ऊपर येलो कलर किया हुआ है।

इस अस्पताल के आगे कुछ स्कूटी खड़ी है एक सफेद कलर की एक काले कलर की।

एक इधर सामने चार्ट और बना हुआ है इधर तीन आदमी खड़े हैं पीछे कैलेंडर लगा हुआ है।

हुई है इधर एक घर बना हुआ है।

होटल के आगे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं बाहर एक मोटर सायकल खड़ी है इसके पास मैं एक और दुकान --

कुरकुरे चिप्स है और नीचे बेंच के ऊपर कुछ डिब्बे पड़े हैं डिब्बों के अंदर चॉकलेट बिस्किट है।

मूर्तियों के गले में माला डाली हुई है यहां एक मूर्ति के गोद में दूसरी मूर्ति को ठहराया हुआ है लेटाया हुआ है।

इस फोटो के अंदर यहां एक सामने ट्रेन खड़ी है रेल की पटरी के ऊपर --